ट्रेन आ रही है इसलिए रेड अलर्ट कर दिया गया है कोई स्टेशन पे ना जाए।

और यह रेलवे स्टेशन के बाहर की तस्वीर है और यहाॅं पे ऑटो रिक्शा खड़े हुए हैं टेंपू जिसको कहते हैं और इ रिक्शा भी है जो बैटरी से चलता है और ट्री है पेड़े हैं बिल्डिंगे हैं।